जिसमें सफ़ेद रंग का बहोत ही बड़ा बोर्ड दिख रहा है।

एक रिक्शा दिख रही है जो की बहोत ही रंग-बिरंगी दिख रही है।

बोहोत सारी कन्याये दिख रही है।

एक मैदान दिख रहा है जिसमे बहुत ही छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं ।